इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा टोवर दिखाई दे रहा है। अं एक रास्ता है जिसके साइड में चार पेड़ लगे हुए है जो कि ग्रीन कलर के हैं।

इस चित्र मे हमे दिखाई दे रहा है की एक रेली जा रही है।